इस तस्वीर में मुझे मालगाड़ी दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे बहुत सारे मोबाइल दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ किताब दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे मालगाड़ी दिखाई दे रही है।